तो जैसा कि आप देख--

साफ सुतरा है यहां--

सकते है यहां पर--

इससे आगे एक वाइट कर खड़ी--

एक बहुत बड़ा रावण का पुतला बनाया गया --

और यहां पर बहोत सारे लोग--